आरा-रा है मंदिर के ऊपर एक ऑरेंज कलर का फ्लैग लगा हुआ है मंदिर के दीवाल का रंग सफेद और ऑरेंज नजर आ रहा है।

बीच में हवन हो रहा है हवन के बीच में जो एक लाल कलर का कपड़ा नजर आ रहा है जिसको एक आदमी पकड़ा हुआ है।

दीवाल के पीछे एक बड़ी बिल्डिंग बनी है जोकि पिंक कलर की है बिल्डिंग के ऊपर दो पानी की टंकी रखी है जो कि काले रंग की है।

और नीचे जो है वहां पे शटर लगे हुए हैं जो कि सफेद रंग के हैं।